दीवार में फूल चिपकाए गए हैं।

वो जो साइड में खड़े हैं।

पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है बहुत सारी ट्रकें दिखाई दे रही है पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इसका कलर आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है।

साइड में घास दिखाई दे रही है।

बहोत सारी औरते बाहर में खड़ी है।

टंकी लगा हुआ नजर आ रहा है डिश एंटीनालगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एगो ऑटो में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

आप देख सकते है फैक्ट्री है इसमे बहुत सारे लकड़ी इकट्ठे किए हुए नजर आ रहे हैं।